यहां कुछ काम चल रहा है मकान बन रही है ओ सामने बासे लगी हुई है ढलाई किया गया है ऊपर--

ड्राई कुंड जमाने के लिए बालक पासेस लगाए गऐ हैं।

एक बड़ा सा खेत है खेत में काफी सारी चीजें लगी हुई हैं।

यहां किसी की वेडिंग की डेकोरेशन की गई है।

एक हिरन दिख रही है जो सामने की तरफ उम्म अपने सिर को उस--

पीछे की तरफ बाउंड्री है टूटी हुई बाउंड्री है।

सिन है ये सामने दरखे बने हुए है दो बॉक्स है ऊपर छज्जा बना हुआ है नीचे --

एक दुकान है बड़ी सी दुकान है वेगनन--

दरवाजो का कलर ब्राउन में है दरवाजो का कलर नहीं किया गया--

सामने एक बोर्ड लगी हुई है बोर्ड में लाइट लगी हुई है --